ये एक बैग की दुकान है वहां पर एक लेडिस --

संडे के दिन यहाँ लोग आते हैं टाइम पास करने अपना मनोरंजन करने के लिए और यहाँ पर ।

पहली से लेकर बारहवीं तक के पढ़ाया जाता है यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचरस अच्छी पढ़ाई करते हैं यहाँ हम।

ये नजारा बहुत ही सुंदर और अमनिय स्थान है ये बहुत ही अच्छी जगह है।

ये एक मकान बन रहा है उसमें काम चालू है शटरिंग लगी हुई है रेती ईंटा गिरा हुआ है।

के ऊपर चादर ढाक दी गई है बच्चों के हाथों में और बड़ों के हाथों में दी गई है।

बीच मैं मशीन रखी गयी हुई हैं एक तरफ से एक छे नाक चेक आँखी चेक कर रहे हैं।

ऊपर ऊपर आसमान पर उड़ने के लिए--

हिंडियों में अच्छे-अच्छे झाड़ लगाए हुए हैं।

ये सफाई शुरू है यहाँ पर एक लेडीज उधर खड़ी है।

एक बा आजु बाजू बच्चे खड़े हैं कोई बैठे हैं यहाँ पर खेल प्रशिक्षण दिया जाता है।

नीचे में फ्लोर बहुत ही सुंदर है।

यहाँ पर डंबल्स रखे गए रखे हुए हैं।

वो डम्बल से योगा किस तरह किया जाता हैं उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका बा।

आजू बाजू से वॉर कम्पाउन्ड किया गया है--

और सामने आंगन में लकड़ियों का ढीक रख--

बैलून लगा हुआ हैं लाइटिंग लगी हुई ऊपर पी ओ पी के पी ओ पी लगी हुयी हैं।